और सामने देखिये तो घी के जो हे वो डब्बे लगे हें ऊपर एल.ई.डी. है।

और बहुत सारी जो है हम नीचे जो है वो मिट्टी देख पा रहे हैं।

और बिलकुल उसकी अगर हम बाहर देखे तो बाहर एक दूर काले से कलर की जो बास्केट है उसके ऊपर बहुत सारे सेब लगे हुए है।

जैसे कि इस दृश्य में हम देख पा रहे है कि यहां पे काफी सारे रंग-बिरंगे तोते है।

इस दृश्य में जैसे कि हम देख पा रहें हैं की यहाँ पे जो है वो दुर्गा पंडाल लगा हुआ है।

एक और ट्रक खड़ा है।

जैसे कि हम इस दृश्य में देख पा रहे हैं कि ये दृश्य दर्शाता है कि ये एक किताबों की दुकान है जहाँ पे हम --

और यहाँ पे एक स्कैनर भी है पेटीएम का जो --

जैसा कि हम इस दृश्य में देख पा रहें हैं कि एक बहुत बड़ा-सा ब्रिज है जहाँ पे काफी सारे हमें जो लोग हैं वो दिख रहें हैं और नीचे अगर हम देखें तो नदी है बहुत बड़ी बहुत --

अ और आसपास जो है वो पूरा घाट हमें दिख पा रहा है।

और बिल्कुल बाहर हम दो व्यक्ति --

देख पा रहे हैं जो की अ होटल की तरफ जा रहे हैं एक पार्किंग का जो है लाल से रंग का बोर्ड है।

जो की दर्शा रहा है की पार्किंग का जो एरिया है वो यहाँ है।

और बिलकुल सामने जो है हमें बिलकुल --

काला रंग भी है कुछ नीला है हरा है काफी सारे लोग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं।

अ है उस आ जिम्म का हमे एक दर्शाता हैं की वो जिम मे है वो।

जो कि काले-सी रंग की है।

हमें दिख रहे हैं और नदी के बीचो-बीच भी हमें काफी सारे जो है वो जंगली --

जो पौधे हैं वो ग्रिल के जो है उनको अंदर रखा --

जैसे कि हम इस दृश्य में देख पा रहे हैं कि ये दृश्य जो है वहां पे तीन नाव खड़ी हैं.

अ हरे भरे से जो है वो थोड़ी घास दिख रही है --

और ऊपर जो है हमें बिलकुल जो बादल है वे एकदम सफ़ेद अ जो है मौसम दिखाई --

ये बिल्कुल अ हरा-भरा खेत का और बड़े-बड़े से जो है यहां पे अ --

और एक चिल्ड्र्न बुक्स करके जो है वो बोर्ड है और नीचे जो है एक व्यक्ति खड़ा है।

बोर्ड लगा हुआ है जो कि बिल्कुल नीले से रंग का है।

और बिलकुल अअ वाइट सफ़ेद से रंग कि पुरी अअ है ये होटल ।

और यहाँ पे काफी सारे लोग हैं आसपास और बिल्कुल जो है वो रात का समय है।

एक बोर्ड लगा है उस पे एक पीले से रंग की जो है वो माला --

एक और दुकान है आजू-बाजू में एक व्यक्ति भी हमे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

और जो दो-तीन टीचर्स हैं वो साड़ियों मे हमें आस-पास दिख रही है।

और आस-पास हम काफी बड़े-बड़े पेड़ देख रहे हैं जिसको नारियल का पेड़ भी बोला जाता है।

हमें इस दृश्य में जैसे कि देखने के लिए मिल रहा है की ये दृश्य किसी के शादी का है और काफी सारे जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पे आसपास हमें देखने के लिए मिल रहें हैं।

महिला खड़ी है उन्होंने हरे से रंग की जो है साड़ी पेहनी हुई है।

जिसमे अ जो है वो डिसप्ले किए गए हैं अलग-अलग तरह के कपड़े।

वो सफेद और नीले से रंग की है जिसमे बहुत सारे जो हम देख रहे आस-पास अ --

और हम देख पा रहें हैं जो की काफी बडी प्रतिमा है माँ के हाथ में जो है वो हम त्रिशूल देख पा रहें हैं जो की सुनहरे से कलर का है।

इस दृश्य में जैसे कि हम देख पा रहे है कि काफी सारी रेत हैं मिट्टी है।

और काफी सारे रंगीन से फूल अ हम देख पा रहे हैं जैसे की पीले क रंग का।

उनकी जो महाराज है उनकी जो तस्वीर दिख पा रही है और एक चेयर है बहुत बड़ी-सी कोई समारोह के लिए जिसे सजाया गया है।